उसपे इंडियन रेलवेज लिखा है ट्रेन का उपयोग बहुत सारे यात्री को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है।

यह मोबाइल टॉवर रूफ टॉप पे इंस्टोल किया गया है।

इस दुकान में सारी वस्तुएं आपको एक जगह पे मिल जाएगी।

इस दुकान में अलग-अलग प्रकार के मोहर बनाये जाते है।

जिसमे निचे भी लोग बेठ सकते है और उपर भी लोग बेठ सकते है नाव पानी में चलती है।

बैंक का उपयोग लोगो का अकाउंट खोलने पैसा जमा करने तथा पैसा एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

यहाँ विभिन प्रकार के फुल दिखाई दे रहे है और कुछ लोग भी है जो फुल को बेच रहे है।

गैराज का मुख्य कार्य यह है की जब किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है तब वो गैराज में ले जाकर उस गाड़ी को ठीक करवाता है ।

यह एक ए.टी.एम. की तस्वीर है यहाँ पे बेंक के खता धारक अपना ए.टी.एम. कार्ड लगाकर अपने खाते से पैसे निकाल सकते है ।